एक टेबल है टेबल का कलर ब्लू है उस पे वाइट डॉट रखा हुआ है उस पे वाइट क्यूब रखा हुआ है।

एक जेंट्स है जो नीचे झुका हुआ है एक चाची है जो पूजा कर रही है।

फूल है फूल के बगल में ब्लू कलर का लाइन है एक बगल में और बिल्डिंग है उसके बगल में पानी का टंकी है।

एक पेर है पेर के बगल में एक और पेर है।

उसके बगल में एक वाइट कलर का चार चक्का लगा हुआ है उसके बगल में--

पानी का टंकी है पानी का टंकी का कलर व्हाइट है।

एक बिल्डिंग है उसके स्टील का गेट लगा हुआ है उसके बाहर एक चार चक्का लगा हुआ है।

एक सिलेंडर का दुकान है जिसमें चार सौ सिलेंडर है सिलेंडर का कलर लाल है सिलेंडर का कंपनी भारत है भारत के ऊपर एक--

पहाड़ है पहाड़ के ऊपर झाड़ी हैं झाड़ी के बगल में--

अअअ-अ ए अठाईसगो सताइशगो --